बहुत अच्छा है देखने में बहुत अच्छा लगता है बिल्डिंग है आदमी सब बहुत है खेलने के लिए आते हैं दूर-दूर से आते हैं| यहां पर बहुत बड़ा फील्ड है।